जैसा बादल छाए हुए है तार दिख रहा है पहाड़ी क्षेत्र है पत्थर है पेड़-पौधा दिख रहा है सब दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यह बहुत सुंदर दिख रहा है |

स्विमिंग पूल दी दिख रहे है पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

गेट नंबर फोर लिखा हुआ है। मंदिर है मंदिर बहुत सुंदर दिख रहा है। झंडा लगाया गया है आसमान ऊ अँधेरा दिखाई दे रहा है --